जिसमें एक आदमी शर्ट पैंट पहने खड़ा हुआ है और एक कैमरे में झांकता हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर साइड में एक रेड कलर की कार खड़ी हुई है।

एक दुकान बहुत बड़ी सी है जो कि बुक की है।

उसके सामने एक लोहे की बहुत ऊंचे नेट लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में सामने की ओर एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।